या हिरण वगेरा सब खेल रहे है और ऊँचे ऊँचे पेड़ है।

रेलिंग है सामने पेटी पड़ी है।

ये ग्राउन्ड की है हेरिक एकदम हेरी घास है बढियाँ फर्श है।

या पा दोनों साइड अलग अलग पेड़ पोधा है और पा पानी के ऊपर शेवाल जमी है।

कुर्सिया जच्चा राखी है और गोल्डन कलर का पर्दा है।